अच्छी तरह से यहाँ गंगा डॉक्टर प्रभाकर --

मंदिर की तरह लग क्या रहा है मंदिर ही लग रहा है।

खूब बॉडी बनाइये मस्त रहिए।

सरा से डिजाइनिंग से बनाया गया है।

जो बहुत ही क्यूट लग रहा है और माँ शक्ति का फोटो भी बहुत --

पत्थर मैं पहली बार देख रहा हूँ और यहाँ पे --

पार्क है और गाछ भी है। बहुत ही अच्छ --